एक डाइनिग टेबल है और डाइनिग टेबल के ऊपर तरह तरह के खाने की चीजें रखी हुई है और एक सफ़ेद प्लेट में बिरयानी तथा जल --

बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहां विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूले लगी हुई है जोकि बिकने के लिए रखी गई है और अनेक प्रकार के कलर है इनमें।

और इस रोड के साइड से कुछ लोग पार हो रहे --

जंगल के कुछ सामने ही रोड के बीचो बीच काली रंग की गेट लगी हुई है।

बड़े-बड़े से फ्लैट दिख रहे हैं और एक पंजाब नेशनल बैंक दिख रहा है। और इसके सामने बड़े से पेड़ लगे --

यह एक खूबसूरत सा बैडरूम है और इस बैडरूम के बीचो-बीच एक पलंग लगा हुआ है जो की बहुत खूबसूरत है।